येह है एक शॉपिंग मॉल है उसमें तरह-तरह की वस्तुएं रखी हैं।

ऊपर ऊ पूल है।

यह एक रूम है | रूम में बेड पड़ा हुआ है सामने तकिया लगी हुई है दीवाल पर दो सीनरी लगी हुई --